और ये इसके बाहर चार पांच कार लगा हुआ है यहां पे यहां पे भी तीन दो तीन कार लगा है मोटरसाइकिल से लगा हुआ है आदमी सब है।

ये आदमी भी लग रहा है यहां पे नाव दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे आदमी है।

वो भी थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है पौधे पेड़ पौधे से भी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग थोड़ा-थोड़ा----

यहां पे काउंटर भी दिखाई दे रहा है जो शीशा लगा हुआ है वहां बहुत सारा ठंडक है बहुत सारे ऊपर लाइट सब भी लगा हुआ है।

इस साइड आदमी ब्लैक कलर का कपड़ा पहन कर योगा कर रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे से पीछे दिखाई दे रहे हैं हरे भरे यहां पे एक बहुत बड़ा खंभा दिखाई दे रहा है दोनों साइड से --

यहां पे बहुत बड़का बैंक दिखाई दे रहा है मकान है जिस पे इंडियापोस्ट भारतीय बुक इंडियापोस्ट पेमेंट बैंक दिखाई दे रहा है।

यहां पे यहां पे मंदिर दिखाई दे रहा है बहोत बड़ा बड़ा मंदिर सा दिखाई दे रहा है यहां पे पैर पौदा से दिखाई दे रहा है हरे भरे पैर पौदा से यहां पे आसमान का रंग थोड़ा-थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा सा रूम है जिसमें बहुत दो तीन दो पंखा दिखाई दे रहा है तीन चार पांच छ सात आठ कुर्सी दिखाई दे रहा है यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें लड़कियां तितली सब है।

कुर्सी से दिखाई दे रहा है यहाँ पे पढ़ाने वाला भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे मिटाने वाला ब्लैक कुछ धरा हुआ है।

साइड में कुछ झोला सा भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे गोल का गोल गेट बनाए दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है यहाँ पे तार दिखाई दे बहुत सारा तार गया यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है और---

यहां पे बहोत सारा कुर्सी दिखाई दे रहा है यहां पे आदमी सब बैठे हुए हैं अपने काम कर रहे हैं यहां पे इस साइड भी आदमी सब बैठे हुए हैं।

यहाँ पे लड़की सब प्रोग्राम कर रही है हाथ में तलवार माता रानी के भैस में तैयारी हुई है।

बहुत सारी अंधेरी रात दिखाई दे रही है आसमान का रंग पूरा काला छा गया है।

रात्रि के समय ये कार देख शिव लिखा है शिव ॐ लिखा दिखाई दे रहा है कार पे ---

एक रूम है रूम मे बहोत सारे चेयर्स लगा हुआ है टेबल भी रखा हुआ है।